यहाँ पर ग्रीन कलर के रेड कलर के पिंक कलर के तरह-तरह के फूल हैं सामने कुछ व्यक्ति नजर आ रहे हैं लोहे के पाइप नजर आ रहे हैं टीन शेड लगा हुआ है।

ऊपर एक बिल्डिग नजर आ रही है आदि सामने स्टिक लिखा हुआ है।

सामने के तरफ एक बड़ा सा गेट नजर आ रहा है गेट पर लिखा है ब्लैक डैमंड्स मोटर्स लिखा हुआ है सामने के तरफ एक रास्ता जा रही है एक डोर खुला हुआ है एक बाइक खडी़ हुई है।

साईड में एक और मल्टी मंनी नजर आ रही है और तरह तरह के शेड्स नजर आ रहे है।

सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसका कलर आसमानी हैं नीचे ऑरेंज कलर है एक टोपी दिख रही है जिसका रेड कलर है जिसमे से पानी निकल रहा है ऊपर की तरफ आसमान आ रहा है।

ये एक फूल की दुकान है सामने के तरफ इसमें चमेली के फूल नज़र आ रहे है सामने एक व्यक्ति एक फूल को हाथ में लिए हुए पुरो रहा है सामने एक माला टंगी हुई है जो सफेद कलर की है उसके साइड में ऑरेंज कलर की माला है।

ये एक फूल की दुकान है यहाँ पर बहुत सारे फूल रखे हुए है यहाँ पर बुके भी रखे हुए है रेड कालर के व्हाइट कलर के पिंक कलर के फूल नजर आ रहे है चमेली के फूल गुलाब के फूल सरसो के फूल--

यह एक मछली की दुकान है यहां पर तरह तरह की मछलीयाँ सामने रखी हुईं है सामने के तरफ भी मछली है ऊपर की तरफ भी मछली है और उसके नीचे रेड कलर की कार्पेट बिछा हुआ--

सामने एक स्ट्रीट लाइट जल रही है ऊपर आसमान डार्क शेड हो रहा है।

ये एक वाटर पार्क है । यहाँ पर स्लाइड दिख रही है। जहाँ पर स्लाइड का कलर ब्लू है कुछ का कलर व्हाइट कालर का सामने स्ट्रेट लाईट चल रहा है। नीचे की तरफ लोहा नज़र आ रहा है। सा साइड में इक मल्टी नज़र आ रही है।

ये एक फूल का दुकान है। सामने एक टोकरी में फूल रखे हुए है। गेंदे के फूल उसके साइड में एक बाल्टी में बुके रखा हुआ है। उसके साइड में रेड कलर का बुके रखा हुआ है। जिसमे से व्हाइट कलर का फूल है।

ये एक नर्सरी फार्म है जहां पर तरह-तरह के झाड़ पौधे लगे हुए है जिसमें से निकल रहे हैं जिनके कलर ऑरेंज पीला है रेड कलर की पत्तियाँ है ब्लू कलर की पत्तियां भी है सामने कुछ फ्लावर पार्ट भी नजर आ रहे है।